पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं एक बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी पत्थर की प्रतिमा दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहा है जैसे की जैकेट जीन्स टी-शर्ट ।

अनार मोसम्भी वगैरा सभी प्रकार के फल रखे हुए दिखाई दे रहे है। एक पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है। बंधा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में कुर्सी बेंचे लगी हुई दिखाई दे रही है जिन पर बहुत सारे लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे --

पंखे ए.सी. लगी हुई भी दिखाई दे रही है गेट खिड़कियाँ दिखाई दे रही है हॉल में इधर-उधर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।